इस दुकान में बोहोत सारे सामान रखे हुए हैं। उसमें दो फ्रिज दिख रही हैं।

जो की पीली पट्टी से निशान किया गया हे।

यह चित्र एक क्लास रूम का चित्र है।

इस चित्र में बहुत सारे बच्चे टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं।

इस चित्र में ठीक सामने से एक रोड जा रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा सा शापिंग मॉल दिख रहा है।

एक व्यक्ति सफेद कलर के कुर्ता पहने भगवान की मूर्ति पे माला चढ़ा रहे हैं।

वहां पे लोहे की बाल्टी रखी हुई है।

उसके ठीक सामने एक बैनर लगा हुआ है उस बैनर पे लिखा हुआ बाबा बुद्धेश्वर मंदिर में आये हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है।

उसके अगल बगल कुछ हरे भरे पेड़ हैं ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

बगल में लोहे या एल्युमिनियम के कुछ प्रोडक्ट बनाकर रखे हुए हैं।

सामने एक कूलर रखा हुआ है और ये घर सफेद और हरे कलर से पेंट किया गया है।

इसमें कुछ मशीनरी रखे हुए हैं।

उसके ऊपर छत है जो सफेद कलर से पेंट है।

बगल में एक्सरसाइज के लिए मशीनें रखी गई है।